गेट का रंग हल्का पीला और रे काला है और --

पुस्तक भंडार है जिसमें दुकान खुला हुआ है और दुकान के अंदर कुछ फोटो टेबल में लगा हुआ है।

और उसके सामने ब्लैक कलर का स्टैन्ड इस्पिथ है और इस घर का पीला रंग से किया गया है और गेट बंद है।